इस तस्वीर में मुझे चार इंसान दिखाई दे रहा है और तीन इंसान तोकता का ऊपर बैठा रहा है।

ब्लू कलर का बैग भी पकड़ के है।

में बहुत सारा बेंच भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक सीसा से बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का टमाटर और थोड़ा पीला कलर का भी टमाटर है यहां में जो बस्केट अंदर रखा हुआ है।

उसमें बहौत सारा चेयर्स और टेबल भी रखा हुआ है।

फ्लोर में एक छोटा सा मेट भी रखा हुआ है।

वॉल में पेंटिंग लटकाया हुआ है।

बाहर में दो बस भी है वाइट कलर और येलो कलर का।

स्कूटी भी रखा हुआ है।

पीछे में बहुत सारा बिल्डिंग भी है पेड़ भी है।

नीचे मे बहोत सारा जूस है ऊपर में बहोत सारा चॉकलेट रखा हुआ है।

इंसान लोग भी है और ऑरेंज कलर का झंडा भी है।

बोट में टायर भी लटका है।

घर में छोटा छोटा पेड़ लोग भी है।

दुकान के बाहर बहुत सारा गाड़ी भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।